मुझे इस चित्र में दिखाई दे रहा हैं। ये एक शोरूम हैं।

ये एक गाड़ी का शोरूम है जहां अलग अलग एक्टिवाज् लगी हुई है।

वहीं साइड टेबल पे कुछ लोग बैठ के काम कर रहे हैं।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

फ्रिज के सामने व्हाइट कपड़ों में चेयर्स रखी हुई हैं।

स्टेज पे बहुत सारे लोग हैं और कलरफुल लाइटिंग की गई है।

और पीछे एक कार्यालय है जिस पे लिखा है--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

वहां पे कुछ हरे भरे और कुछ सूके पेड़ हैं।

और स्टांप के पीछे एक लड़की विकेट कीपर बनी हुई है।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

मुझे इस चित्र में दिख रहा है ये एक छोटा सा कैफे हैं।

यहां पे ये बम्बू के सिको से बना हुआ है।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

जहां पे बहोत सारी ट्रके खड़ी हुई है।

मुझे ये चित्र एक घर के बाहर का दिख रहा है।

कुछ बकरियाँ खड़ी हुई है कुछ बकड़ी बकरियाँ चारा खा रही हैं।

थर्टीन टैटू ऑल स्ट्रीट और नीचे मोबाइल नंबर लिखा--

ये एक न्यूली इनोग्रेटेड मेडिकल की दुकान है।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

एक आदमी ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए ट्रेडमिल पे कर रहा है।